हमें कोई भी कस्टमर नजर नहीं आ रहा--

इस दृश्य में हमें एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

हमें इसमें बहोत सारी लोग भी दिख रहे है।

देखनी से यह कोई जूलरी शॉप लग रही हैं।

इस दृश्य में हमे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग --

इंस्टीट्यूट आफ केमेस्ट्री एंड फिजिक्स ।

आ रही है कोई भी डॉक्टर नहीं दिख रहा।

इसमें हमे फूलों की मालाएं दिख--

और बहोत लाइट्स भी लगी दिख रही है।

किसी गैराज का लग रहा है।

इसमें शीशे की किट लगी है।

देखने से यह कोई क्लास रूम लग रहा है।

हम ये एक कुर्सी भी पड़ी--